स अगल-बगल में भी धारी बनी हुई हैं कुछ पटरी बनी हैं ऊपर जिस पर व्यक्ति जाते हैं नीचे वाहन चलते हैं ऊपर भी वाहन जा रहे हैं।

पेड़ लगे हुए है यहाँ कुछ पट्टे से दिखाई दे रही है सब में जलियां लगी दिखाई दे रही है।

यह पुराना एस_बी_आई बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा चेसी यहां एसियां लगी हुई है।

यह फोटो पुल से ली गयी है या ब्रिज से ली गई है इसमें सब में रेल्लिंग बनी हुई है जिसमे क्रोस्स के निशान बने हुए है।

यह एक पुरानी बोट रखी हुई है यह एक तालाब लग रहा है यहाँ पेड़ लगे हुए हैं।

यह चट्टानों से बने हुए बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से टच और टेढ़े रखे हुए है यहाँ नीचे रेलिंग बनी हुई है।

मूर्ति क्या रखे हुए है यह फोटो नीचे से ऊपर की खींची गई है।

ये चर्च का बहुत पुराना महल लग रहा है यहाँ पानी भरा हुआ है ब्लैक कलर का गैट लगा हुआ है एक निम का पेड़ लगा हुआ है।

ऑफ कॉलेज एग्रीकल्चर यहाँ एग्रीकल्चर से पढाई की जाति है दोनों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई है।

यह बहुत ही पुराना कॉलेज है ये व्हाइट कलर का पुता हुआ है पीले कलर की लाइन में लिखा हुआ है दोनों तरफ झंडे लगे हुए है।